माली दिख रहा है दुकान दिख रही है डेकोरेशन दिख रहा है खूबसूरत फूल लगे हुए हैं।

एक क्लासरूम दिख रहा है जहां पर कई सारी बुकें दिख रही हैं।

एक बूके दिख रही हैं जहां पर अलमारी में जमी हुई है एक लाइब्रेरी जैसा दिख रहा है।

पीछे बिल्डिंग दिख रही है एक आदमी दिख रहा है।

तस्वीर में आपको एक दुकान दिख रही है ये एक पुस्तक की दुकान हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के बाहर बहुत सी औरतें खड़ी हैं।

टाइल्स दिख रहें हैं बेड रखा हुआ है हॉस्पिटल वाला।

एक वैद सुपरबाजार का बोर्ड लगा हुआ है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग पर लगा है नीचे--

पेड़ दिख रहे हैं घांस दिख रही है।

जिसके पीछे एक झरना और नाव है ये फाउंटेन जैसा दिख रहा है।

सेव बन रही है लोग खड़े हुए हैं काम कर रहे--